मुझे इस फोटो में सूरज दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कटोरी में चम्मच दिखाई दे रही हैं।

सारे घास दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो में कुर्सी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में दो घंटी दिखाई दे रही हैं।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

कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो में जिम दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में एक बैग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक पुरुष दिखाई दे रहां हैं।

मुझे फोटो में कार दिखाई दे रही हैं।